के ऊपर एक कार्पेट बिछा हुआ है गोल्डन कलर का इसके आसपास व्हाइट कलर का पूरा पुता हुआ है।

और ना ही उसकी दिवार के ऊपर कुछ ग्रीन कलर का एक पोस्टर लगा है उसपे कुछ टाइम टेबल या कुछ लिखा हुआ है और साइड मे भी कुछ रखा है ।

और आस-पास इसके पर्दे डले वाइट और गोल्डन कलर इसे सजाया गया हैं रात का टाइम हैं लाइटे जल रही हैं।

यह एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है दिव्यांश रेस्टोरेंट और होटल दिव्यांश इसके साइड से जीना दिया गया है अंदर जाने का--

अ सामने पेड़-पौधें भी लगे--

महरून कलर की कुर्सिये लगी है आसपास फुगों से डेकुरेट करा गया है यहाँ फूरोजी पीले हरे लाल फुगों से डेकुरेट हो रहा है।

और इसमें ब्लैक कलर की कुर्सीया हैं इसकी मुझे गोल्डन कलर का होटल है उसको लाइटो से डेकोरेट करा हैं।